एक कार यहां पे पड़ी हुई है।

छी के नीचे टाइल लगी हुई है।

गद्दे से सब डिजाइन बनी हुई है।

इसके अंदर स्टेज का चढ़ने वाली सीढ़ी है।

जिसमें से एक व्हाइट है एक पिंक है और दो रेड और व्हाइट है।

मट्टी भी पूरे में पड़ी है कछुए हैं तीन।

रनिंग मशीन भी रखी हुई है।

उसी के ऊपर एक फोटो है उसके ऊपर एक पंखा लगा हुआ है।

एक सामने टेबल फैन लगा हुआ है दीवाल के अंदर।

के अंदर दो कार दिख रही है।

और एक मटका मट्टी का बना हुआ रखा है सामने वाल।

सामने वाल मंदिर बना हुआ जिसमें लोहे का गेट लगा है।

इसमें सीलिंग बहुत अच्छी बनी हुई है।

तीन लेडीज़ बैक में पीछे खड़ी हैं एक बच्चा लेकर--

एक खम्बा लगा हुआ है लेफ्ट साइड पे इसके।